बहोत सारे लोग है पार्क में चारो तरफ बहोत बड़ा घास का मैदान है बहोत सारे पेड़ है चारों तरफ बडे-बड़े पेड़ है।

एक सफेद रंग की लाईट भी जल रही है।

कैफे का दीवार सफेद रंग का है बहुत सारे सफेद रंग की लाइट लगी हुई है दो सफेद रंग के पंखे लगे हुए हैं।

जिसमें सफेद और हरे रंग की बस है।

और भी भिन्न भिन्न प्रकार के सामान रखे हैं।

क्योंकि बहुत हरा भरा जंगल है पीछे जब जमीन में बहुत सारे घास भी लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक नदी की है।

वह एक आदमी बाहर समान भी लेरा है।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक रोड की है।

लड़के ने सफेद रंग की शर्ट पेहनी है।

इस तस्वीर में जो फोटो है इसमें स्टेज है स्टेज के ऊपर एक मेहरून रंग का सोफा है।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक दुकान की है।

जिसमें पीठालिया कंपलेक्स लिखा हुआ है बहोत सारे कांच की खिड़की है।

ऊपर हरे रंग का मैट लगा हुआ है बास भी लगा हुआ है एक महिला पीले रंग का कपड़ा पहनी है।

इस तस्वीर में जो फोटो है ये एक शादी का नजारा है जिसमें दूल्हा दुल्हन है।

इस तस्वीर में जो फोटो है ये एक रोड की है जिसमें बहोत सारी कार खड़ी है सफेद रंग की सामने एक ढाबा भी है जिसमें रायपुर का एम_डी ढाबा लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक शॉप की है जोकि आइसक्रीम शॉप की शॉप है जिसके बाहर रॉक स्टोन लिखा हुआ है।